और घर का वाल में बैलून यह सब चिपका के रखा हुआ है।

बबूल के पीछे में बहुत सारा घास और पेड़ यह सब दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक घर है इस घर के बाहर में एक टेबल दिखाई दे रहा है।

यहां एक घर दिखाई दे रहे हैं इस घर का बाहर में भगवान का मूर्ति एक ठो रखा हुआ है।

और साथ में एक ब्लू रंग का डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ घर का अंदर बहुत सारा का कपड़ा ये सब प्लास्टिक का अंदर डाल के बांध के रखा हुआ है।

अंदर में एक पोल्स भी दिखाई दे रहे है।

इस बिल्डिंग का पीछे और साइड में बड़ा वाला पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रस्ता दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ दुकान के अंदर एक लड़का चश्मा लगा के बैठा हुआ है।

उसका आगे मे आलू ये सब भी दिखाई दे रहे हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है इस घर का ऊपर में कुछ बोर्ड ये सब चिपका के रखा हुआ है।

यहां एक बड़ा वाला ब्रिज दिखा दे रहे है।

और घर के वॉल में फोटो ये सब चिपका के रखा हुआ है।

और वहां पे कुछ बैलून ये सब से कुछ सजा के रखा हुआ है।

यह एक दुकान दिखाई दे रहे हैं।

और पीछे में बहोत सारा पेड़ ये सब दिखाई दे रहे हैं।

और अंदर में लाइट यह सब जल के देख रहे हैं।

यहां सामने में एक बड़ा वाला पत्थर दिखाई दे रहा है

और बहुत सारा घास ये सब दिखाई दे रहे है।

और दूर में खेती करके और बीच में पानी यह सभी दूर में दिखाई दे रहे हैं।

और घर का अंदर पंखा यह सब टंगा के ऊपर में रखा हुआ है।

और शिशा के अंदर में कंप्यूटर यह सभ भी अंदर में दिखाई दे रहे हैं।

यहां दुकान का अंदर एक लड़का सफेद शर्ट पहन के एक तू दिखाई दे रहे है।

और गाड़ी ये सब दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गहरी रस्ता दिखाई दे रहे है इस रस्ता का साइड में बालू यह सब दिखाई दे रहे हैं।

यह एक स्टेज में कार्पेट ये सब बिछा के आदमी लोग बैठा हुआ हैं।